पेड़ दिखाइ दे रहे हैं एक दरवाजा भी--

और जहां से बादल भी दिख रहे हैं।

बाहर के तरफ एक लड़की का स्टेचू बना हुआ है जिसने येलो कलर की फ्रॉक पेहनी है।

गाड़ी का गेट खुला है और पास में ही एक सिलेंडर और टायर रखा हुआ है।

कंपनी के बाहर न्यू सेंचुरी सीमेट कंपनी लिखा हुआ है।

आम आदमी पार्टी फाजिल्का लिखा है और ऊपर की तरफ रॉयल मार्ट लिखा हुआ दिखाई--

यीशु मसीह की फोटो लगी हुई है।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

जिसका नाम ठेका कॉफी देसी है।

गाड़ी की सर्विस हो रही हैं।

टायर रखे हुए हैं और बहोत सारा सामान भी रखा हुआ दिखाई दे--

हाथ में रैकेट पकड़ा हुआ है।